नदी के चारों तरफ़ मेला लगा हुआ है।

इस मंदिर के अंदर बहुत सारे आदमी है श्रदालु लोग --

ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है।

इसमें बहुत सारा एंगल यहां पर रखा हुआ है|